एक होटल है जिसमे कांच से बनी एक फ्रिज है जिसके अंदर कई प्रकार के आइस क्रीम रखे है।

अंदर कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं और कुछ गेट के बाहर खड़ी हुई हैं और अंदर बोहोत सारे लोग हैं।

एक बहोत बड़ा हॉल है जिसमें बहोत सारे लोग हैं और कुछ लड़कियां हैं जो की छोटी लड़कियां हैं।

एक आदमी नीचे पे खड़ा है गड्डे में जिसका हात टूटा हुआ है जोकी प्लास्टर बंद है प्लास्टर का कलर सफेद कलर का है एक आदमी जो की रोड पकड़ा हुआ --

एक बहौत बड़ा हॉल है जोकी एक कंपनी का हॉल है सबी लोग खड़े हैं जोकी मास्क लागए हुए हैं सबी संतरी कलर के कपड़े पहने हुए हैं सामने एक आदमी है जो उणको कुछ बाता रहा है।